अ कई रंगों की है कोई काली है नीली --

फूड ट्रेक और इसके नीचे कई सारे लोग --

दिए गए इमेज में हमें स्ट्रीट मार्केट दिखाई --

है सामने कई सारे स्लाइडर दिखाई दे रहे हैं।

पूर्व उत्तर प्रदेश सामने एक सफ़ेद रंग की --

आ पत्थर में लिखा हुआ है जमुना ईसमार्क --

आँगन दिखाई दे रहा है उस आँगन में दो मुर्गे हैं जो हलके सुनहरे और काले रंग के हैं।

और सामने दो लड़किया हरे रंग के कार्पेट में भरत नाट्यम का --

एक काले रंग के बोर्ड पे लिखा हुआ है देयर आर --

उसमे कई सारे बॉडीयओं में काटें लगे हुएं हैं।

कई सारे समाने रखे गए हैं कोई बॉक्सेस में है कोई पैकिंग किये हुए हैं।

दिखाई दे रहा है और आस-पास कई घर दिखाई दे रहे है जो ईट्टो के बने हुए हैं।

रासन की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें कई तरह के सामान रखे ग --